यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का गुफा है| यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ है और एक लड़की के हाथ में एक बच्चा भी है| एक लड़की पिंक कलर का टी-शर्ट और ब्लू पैन्ट पहनी हुई है और एक लड़की ब्लू टी-शर्ट और ब्लू पैन्ट पहनी हुई है।

यहाँ पर एक पेंटिंग किया गया है जिसमें. एक आदमी जो पेड़ लगाए हुए नजर आ रहा है| यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है| यहाँ का कार्यालय बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर बहुत ही शांति माहौल--

यहाँ पर बहुत-सी बाइक भी लगी हुई है| यहाँ पर बहुत सारा पेड़-पौधा और पूरा सुनसान रोड़ नजर आ रहा है| यहाँ --

यह तस्वीर क्लब की है जोकि-जोकि गोपालगंज में स्थित है| इसका नाम गोपालगंज क्लब गोपालगंज है| यह इसका स्थापना उन्नीस सौ उनतीस इसवी में किया गया।